यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इस दुकान में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और बहुत महंगे-महंगे भी कपड़े आते हैं। इस कपड़े के दुकानदार भी बहुत अच्छे से बात विचार और बहुत अच्छे से दाम दुकानदारी भी लगाते हैं।

और यह पेड़ पौधे के सामने पहाड़ ही नजर आ रहा है। बहुत ही हरा भरा लग रहा है देखने में पहाड़ और पौधा।